सामने लिखा हुआ है लैब मोटर गैरेज पिक्चर नीचे नंबर लिखे हुए और लिखा है कार ए_सी गैस सिलिंग फोर्टी वन

ठीक है नीचे भी लिखा है पेशावरी सुपर मार्केट ऊपर लिखा हुआ है मनारस फ्री ।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

आसपास थोड़ी दूर मतलब पेड़ पौधे हैं दिन का समय है ये और सर्दियों का समय है क्योंकि सभी ने जैकेट पहनी हुई है।

मतलब की काफी बड़ी सी ये बिल्डिंग है ऊपर दिन का समय--

इस फोटो में यहां पर काफी सारे सोफे दिखाई दे रहे हैं।

एक यहां पे बिल्डिंग दिखाई दे री है।

सामने लिखा हुआ है टायर पैले--

लिखा हुआ है बीएस मोटर्स डेंटिंग एंड पेंटिंग बंपर रिपेयरिंग --

एक औरत है जिसने पर्पल कलर की सोल ओढ रखी है।

और नीचे एक कार दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

बाहर एक बाइक खड़ी हुई है हेलमेट भी रखा हुआ है दिन का समय है।

सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं और मैको ये मॉल के अंदर का फोटो लगा रहा हैं।

ये यहां पे पेड़ लगा हुआ है कुछ बाइक्स खड़ी हुई है एक एक्टिवा है एक कार है साइकल है।

और रात का समय है क्योंकी देखो लाइट्स लगी हुई है हर जगह और अंधेरा दिखाई दे रहा है --

सभी ने शूज पहने हैं और सभी के सभी लड़के हैं लड़कियां नहीं।

एक यहां पर फ्राई पैन भी रखा हुआ है।

खंभे लगे हुए हैं ग्राउंड है पत्थर है मिट्टी है पानी है।

इस फोटो में दीवार सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

ए_सी लगे हुए है काफी सारे--

दो प्लेट में चावल भर के डाल रखे हैं आसपास बिसलेरी की थम्बस अप की बोतल है।

और यहां पर बड़ी सी बिल्डिंग है पेड़ पौधे हैं घास है मिट्टी है।